एक खेत दिखाई दे रहा है जिसपे बहुत सारी घास भी लगी हुई है और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिसपे फूल लगे हुए हैं सफेद लाल पर्पल इत्तयादि फूल दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक किला दिखाई दे रहा है जो कि ईंटों से बना हुआ है।

एक गैलरी दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग नज़र आ रहे हैं।

एक काउंटर दिखाई दे रहा है जहाँ काउंटर के अंदर एक आदमी है बाहर दो आदमी है जिन ने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

ऊपर एक पंखा दिखाई दे रहा है एक पंखा और नज़र आ रहा है। एक गेट दिखाई दे रहा है जोकि थोड़ा खुला हुआ है नीचे प्लॉट दिखाई दे रहा है कुछ लाइट भी दिखाई दे रही है।

पीले कलर के फूल रखे हुए हैं कुछ क्यूआर कोड रखे हुए हैं पोस्टर दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर की दीवार दिखाई दे रही है।

पीछे एक घर भी दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है छोटे-बड़े पेड़ लगे हुए है ऊपर आसमान भी नजर आ रहा है।